यह दृश्य किसी कम्पनी का दृश्य आ रहा है दिखाई दे रहा है जिसमें की अनेक प्रकार के काम करने वाले कारीगर होनू बैठे हुए लेबर नजर आ रहे हैं|

और बच्चे अपनी किताब में रंग भरते हुए चित्रों में रंग भरते हुए नजर आ रहें हैं वो अध्यापिका इन्हें देख रही है बहुत से बच्चों ने मुँह पर मास्क भी लगाई हुए हैं।

जो कि तस्वीर खिंचवाती हुई नजर आ रही है और सभी बच्चे अपने काम में विलीन है।